एक बाबा जी भी यहां से गुजर रहे हैं।

पर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत हरियाली

अ झाड़ पेड़ छोटे छोटे पेड़ यहाँ पर --

आ लोग यहां पर आते हैं।

ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे कि यहां पर--

बाहर कुछ लोग भी खड़े हैं।

आ तीन लोग यहां पर खड़े हैं उसी के पास में--

और एक व्यक्ति बाह बैंक के बाहर --

यह एक बहुत सुंदर लैब दिखाई दे रही है।

यहां पर एक अ योगा क्लास शुरू हुई है।

प्रगति बुक सेंटर यहां पर--